जैसा की हम देख सकते है। यह एक दुकान है और यह दुकान फॉर्चून की है। फॉर्चून की दुकान मे तरह-तरह के समान मिलते हैं। जैसे कि बिस्किट नमकीन कोका -कोला चाय बिस्किट इत्यादि।

उसके जस्ट बगल मे यानि के.जी.एफ. झुकेगा नहीं साला वाला हीरो खड़ा है। फोटो बना है क्योंकि उसकी बड़ी-बड़ी दाढ़ी है तो इससे प्रचार भी हो जाएगा।

अपने गंगा स्नान करने के बाद इस द्वार से पुनः अंदर घुसके और जाके वह पे दर्शन करते हैं ओर आकांक्षा से अपने दर्शन को भातरुभय बनाते है।

जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह लु यह जो युवक है यह एक शादी के हाल में बैठा है और यह वेट कर रहा है कि कैसे इसको खाना मिले।

जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें जो है एक बार्बर है और एक बार्बर जो दूसरे को मसाज कर रहा है अर्थात बाल काट रहा है। अब ये बाल काटेगा तो वह बड़ा प्रसन्न हो जाएगा।

अर्थात नेपाल भारत मैत्री बस सेवा यह ब यह जो है बस नेपाल से जो है वाराणसी तक आती जाती है नेपाल के लोगों को वाराणसी और वाराणसी के लोगों को नेपाल लेके जाती है।

जैसा कि हम देख खकते है कि यहाँ पे कितना बढ़िया मनोरंजक जो इंटीरियर है लाइक कुर्सी में आप बैठ सकते है। कुर्सी में आने के बाद कितना बढ़िया फैंसी टीम का दफ्तर बनाया गया है ये --

अपनी बाते रखते हैं अपनी चीजो को कन्फेस करते हैं। वहाँ जो पादरी होता हें उसके सामने और वहाँ जाके एक वाईन की बॉटल चढ़ाते है।